चोफा दिख रहा है| लाइट जल रही है| टेबल दिख रही है|

पत्थर दिख रहे हैं। सूरज दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

आदमी दिख रहा है। टीन शेड दिख रहा है।

आसमान दिख रहा है।